ले कर किसी को देख रहा है और वह चश्मा भी लगा हुआ है।

यह एक दुकान दिखाई दे रहा है जो खेलने का सामान इसमें रखे गए है।

यहाँ पे बीच में बहुत बड़ा तालाब है जो सूर्य ढलता हुआ नजर आ रहा है।

है और उसके बगल में स्पोर्ट्स बाइक को भी खड़े किए हुए हैं और --

उस चट्टान के निचे में बैठी हुई है और चश्मे को सिर में रखी हुई है और एक व्यक्ति उस चट्टान पे खड़ा हुआ है।

और उसके आगे पीछे बहुत बड़े-बड़े घने --

मटमेला दिखाई दे रहा है और कुछ सड़कें कच्ची सी दिख रही हैं और कुछ पक्की सी दिखाई दे रही हैं।